पहाड़ों के ऊपर मुझे कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है आसमान बिल्कुल साफ- सुथरा दिखाई दे रहा है और यह फोटो को फिल्टर में लिया गया है यह दिखने में बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव लग रहा हैं।

हम इसे स्कूल या कौलेज ही कह सकते है ये एक बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है इसके साइड मे मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है यह पूरी जमीन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर घाँस दिखाई दे रही है ।

पे में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है यह रोड का कलर मुझे ग्रे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बीच सेंटर पे एक घास का दिखाई दे रहा है और यहाँ पे साइड में मुझे बहोत सारे पेड़ - पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।